यह दृश्य गांव का दिखाई दे रहा है।

नली के बगल में एक आदमी खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है।

जोकि यहां पर लाल कलर का नीचे का परत दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी इवनिंग मोमेंट का दृश्य दिख रहा है।

प्रतीत हो रहा है और यहां बहोत ही मनोरंजन होता है।

चटनी जैसी ग्रीन कलर की है।

तीस फुट पर गहरा दिखाई दे रहे हैं।

फिर भी मैं बता सकती हूं कि यह एक स्कूल जैसा है।